इस चित्र में यहां पे एक लाल किला जिसके पोस्टर पे गणतंत्र द्वार दिख रहा है।

उसके रोड के किनारे पे एक ऑटो जाते हुए नजर आ रहा है।

यहां पे बहुत सारे जिम के सामान रखे गए हैं।

निक रोल चिकन चिल्ली पनीर चिल्ली मशरूम रोल ये सब लिखे हुए हैं उसके नीचे तीन आदमी भी खड़े हैं।

उसके पास से पानी भी आ रहा है।

कार पूरा दुकान हरे और उजले ऑरेंज कलर के बैलून से सजाया गया है उसके--

इस चित्र में दो उजले रंग की बुलोरो और एक ग्रे कलर का कार नजर आ रहा है जिसके ऊपर नीले रंग के सीटे से वह ढका हुआ है उस--

इसमें बल्ब भी लगाया हुआ है यहां पे बहोत सारी--

और अगल बगल एक पेड़ है।

उसके किनारे पे लकड़ी रखी गई है।

जो खूब सुंदर सजाया गया है।

यहां पे बहोत सारे लोग जमा हैं और देख रहे हैं यहां--

उसके पोस्टर के थोड़े दूर पे एक बल्ब लटकता हुआ है।

इस चित्र में एक फील्ड का फोटो है जहां पे एक इंसान काले कलर के कपड़े पहने खड़ा है।

उसके बगल में एक लोहा का डंटा गाढ़ा गया है।

उसके नीचे ब्ल्यू कलर का तार है।

और एक साइड फ्लावर दिख रहा है यहां पे सब जगह उजले और लाल कलर के बैलून से सजाया गया है यहां पे एक पंखा है इस रूम का कलर उजला है।

इस चित्र में रंग बिरंगे पांच फ्लावर रखने वाले हैं पॉट है।

उसके पास बहुत सारे काउंटर भी बनाए हुए हैं जिसके ऊपर विशाखा डायरी के ऐड हैं यहां पे बहुत सारे लोग खड़े भी हैं औ--

इस चित्र में एक दुकान है जो स्कूटी का है कंपनी का ओ_के कंपनी का है।

डीजल और पेट्रोल का उसके बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है और एक बड़ा सा पोस्टर --

उसके पीछे एक घर नजर आ रहा है जिसका रंग उजाला है।

इसके पास कुछ सजावट है जहां डी_जे भी रखा गया है।